जैसा कि मैं देख पा रही हूं मेरे सामने एक ऑफिस है जोकि डेकोरेट किया गया है येलो और वाइट कलर्स के साथ --

जैसा कि मैं देख पा रहे हैं मेरे सामने एक क्लास चल रही है जो कि छोटी सी क्लास है उसमें तीन चार बच्चे बैठे हुए हैं तीन चार लड़कियां बैठी हुई --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं मेरे सामने एक फ्लावर शॉप है यहां पे बहुत सारे फ्लावर रखे हुए हैं रेड कलर के येलो कलर के वाइट कलर के वाइट एंड येलो कलर के माला बनी हुईं है।

और पार्क में अभी कोई भी नहीं है काफी अच्छा माहौल है दिन का समय हो रहा है धूप हो रही है इसलिए शायद कोई है नहीं यहां आसपास--

पोजेस दिया हुआ है सब लोगों के अलग-अलग मैट है ग्रीन ब्लू पिंक सब के अलग-अलग मैट है।

टू इन्टू टू ए_सी स्लीपर कोच है के नाम से ये बस लिखी हुई है आगे जय माता दी लिखा हुआ है।

जैसा कि मैं देख सकती हूं मेरे सामने कुछ बलून है ग्रीन रेड पिंक ऑरेंज कलर के कुछ बलून लटके हुए हैं।

यहां पर किसी चीज की सजावट की हुई है साइड में बहुत ज्यादा हरियाली है काफी पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

एक आदमी फोटो ले रहा है लाइटिंग लगी हुई है कथक सिखा रही है चुन्नी पहन की कथक देख रही है एक लड़की पिंक ड्रेस में है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं ये एक गाड़ियों का गैराज है कार का गैराज है यहां पर बहुत सारी कारें खड़ी हुई है।

और उनकी ब्लू कलर की ड्रेस है कुछ लोग अलग-अलग कलर के ड्रेसेस पहन के आए हैं काफी अच्छे लग रहे हैं बच्चे चोटी करके आए हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं मेरे सामने एक बंदा खड़ा है जिसने मास्क पहना है ब्लैक कलर --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं --